नज़र आ रहा है पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुये नज़र आ रहे हैं झुले दिखाई दे रहे हैं स्लाइडें दिखाई दे रही है छोटे- छोटे और यहाँ पर हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है धुआं दिखाई दे रहा है बाउंड्री आसमानी और सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है ।

उस घर में काफी ज्यादा लाइटे दिख रही है अधिक से अधिक लाइटे जलती हुई झुमरे लटक रही है।

यहाँ पर हरे कलर की दो बसे दिखाई दे रही हैं एक बुजुर्ग इंसान हाथ में और एक बैग टांग रखा हुआ है और यहाँ पर तीन व्यक्ति दिख रहे हैं तीनो व्यक्तियों ने बैग टांग रखा हुआ है एक खिड़की में से --

पर तीन ऑटोरिक्शा दिखाई दे रहे हैं काले और पीले कलर के उनके पीछे कुछ दीवालो पर पोस्टर बने हुए है।

कलर की दीवाल पर नीले कलर के अक्षरों से कुछ लिखा है यहां बैंक के बारे मे बताया ग जा गया है कि सोमवार से शनिवार दस बजे से चार बजे तक अवकाश रविवार एवं महिने की --

यहा पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जो कि लाइट वाला जो मोटर साइकिल से चलता है वैसा है और यहा पर ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है उसके पीछे कई पेड़ दिखाई दे रहे है दीवारे दिखाई दे रही है कई खम्बे भी दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक छोटी-सीगुमटी सी दुकान दिखाई दे रही है यहा पर एक आध- व्यक्ति बैठा हुआ नज़र आ रहा है और नल भी दिखाई दे रहा है लगा हुआ--